इस चित्र मे दिखाई दे रहा है कि यहां पे खेती होने वाला है।

हाथ में झोला लिया है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

एक आदमी बन रहा है दो आदमी खड़ा है बच्चा--

एक ब्लू कलर का सप्ता दिखा रहा है उधर पे।

उधर एक पेड़ है वो दिख रहा है इधर पत्थल है।

लाल टेबुल है लाल कुर्सी है चारक बल्ब बर रहा है।

इस चित्र में दिखाया जा रहे की हाँ गाड़ी का हाउसवेयर है।

लगल है बहुत अच्छा दिखने में।

वहां पे पीला बल्ब लगा है लाल कलर का एक ए_सी है।

ये चित्र में दिखाया जा रहा है कि यहां पे बहुत सारा मछली है वो लाल कपड़ा के ऊपर ऊपरे है।

इधर हरे कलर का एक पाइप है।

लोहा है बहुत सारा है। चीटियाइल चीटियाइल है। बहुत अच्छा है दिखने में।